सामने पानी है पानी के मायने पेड़ा की छाया देख री है।

डिजिटल स्टूडियो ई-मीतर सेवा के अंदर है इने एक पेड़ है।

सामने नीमड़ा को पेड़ है फूला की गेट के ऊपर बेल लगेड़ी है।